इस फोटो में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर मिनी ग्रामीण स्टेडियम नगला पट्टी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

भगवान की एक बड़ी सी --

बस पे परिवहन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

साइकल्स दिखाई दे रही है।

पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। आसमान दिखाई दे रहा है।

पिलर्स दिखाई दे रहे हैं।

पिंक कडल्स दिखाई दे रहे हैं।

एक दिखाई दे रहा है जिसपर आशु कार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

वाटर मेलन दिखाई दे रहे हैं। बनानाज़ दिखाई दे रहे हैं।

बाइक बाइक दिखाई दे रही हैं।

इस पर बी.एच.आई.एम. यु.पि.आई. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।